यहां पे घर बनाया जा रहा है।

ये जगह जामताड़ा का ही है यहां पे बहुत ही प्रकार के लोग आते है तथा अंदर में एक पार्क भी है यहां पर बहुत ही आदमी आते है और अपना अपना काम करके जाते हैं।

ये जामताड़ा का ऑटोस्टैंड है तथा यहां से बहुत ही अच्छे तरीके से ऑटो आकर रुकते हैं यहां से बहुत ही जगह जाने के लिए ऑटो मिल जाती है तथा आपको जहां भी जाना हो वहां वहां के लिए ऑटो यहां से मिल जाती है ये ऑटोस्टैंड जामताड़ा के साइड में ही है।

यह एक बैंक है तथा यहां पे बहुत ही प्रकार के महिला और पुरुष पैसा उठाने आते है तथा इस बैंक में चेक का भी सुविधा उपलब्ध है तथा बैंक के साइड में ही एक ए.टी.एम भी लगा हुआ है क्योंकि अगर किसी को इमरजेंसी में पैसा निकालना हो तो वह ए.टी.एम. से भी निकल सकता है।